एक कोचिंग सेंटर है जिसकी वॉल रेड और ग्रीन कलर की है।

बहोत सी चेयर्स नजर आ रही है और एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

टोल प्लाझा दिखाई दे रहा है।

मच्छी मार्केट में लोग मच्छी बेच रहे हैं काफी लोग उनके पास खड़े--

यह एक घर है और घर में--

दुकान है जहां चार कुर्सियां एक मैट रेड कलर का लगा हुआ है ऊपर फ्लावर्स --